पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे हैमकान दिख काले-काले बादल छाए हुए दिख रहे है यहाँ पे भी लाइट लगी हुई दिख रही है यहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ पर एक मकान भी दिख रहा है जिस पर कृषि संग्रहालया लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कांच के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई दिख रही है।

और आधार केंद्र सेवा केंद्र दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर एक दीवाल पर एक पो- पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर बिल्डिंग दिख रही है उसपे पीले कलर का पेंट है यहाँ पर एक द्वार लोग दिखा हुआ है।